इस फोटो में सामने एक हाल दिख रहा है।

सामने एक म मेज पड़ी हुई है जिस पर एक पर्दा लगा हुआ है।

पर्दा सफेद और गुलाबी रंग का है।

सामने अल्ट्राटेक के कुछ प्रोडक्ट रखे हुए है।

इसमें एक बड़ी सी ऑपरेशन थिएटर की सीट पड़ी हुई है।

जो कि कुछ सैफ है और उनके पास कुछ आदमी खड़े हो रहे दिख रहे हैं।

और उसके पास एक दरवाजा खड़ा हुआ है।

और एक घर के पास एक घर और दिख रहा है जिसका नीला दरवाजा दिख रहा है।

इसमें एक कुर्सी पड़ी हुई है जिसके ऊपर एक टॉवल पड़ी हुई है।

मंदिर दिख रहा है छोटा सा ऊपर की तरफ एक पेंटिंग लगी है।

इस फोटो में एक वेडिंग हाउस दिख रहा है जिसमें ऊपर कुछ लिखा हुआ जल रहा है।

एक लाइट भी दिख रही है जिसपर तीन लाइटें और लगी हुई हैं।

और दो कुर्सी सामने की तरफ को रखी हुई है सामने कुछ बेल पत्ती भी दिख रही हैं।

इस फोटो में सामने चार थम्ब दिख रहे हैं।

एक थंभ पर कुछ पटिया खींची हुई है जो लाल रंग से हैं।

इसमें एक औरत दिख रही है पीछे एक आदमी दिख रहा है।

के तरफ एक बड़ा सा बोर्ड और लगा हुआ है जिस पर एक कार बनी हुई है।

ओ पी_ओ_सी का काम हो रखा है।

इसके पास में एक सफेद रंग का स्विच लगा हुआ है।

सामने काउंटर के ऊपर कुछ खाने का सिस्टम रखा हुआ है।

जो कि क्लास में लाइन बनी रखी हुई हैं।

जिसमें अलग अलग तरीके की किताबें रखी गई हैं।

पीछे कुछ डस्टबिन भी पड़े हुए हैं।

सामने कुछ कांटेस्ट करने की स्लाइड रखी हुई है।

सामने कुछ मशीनें रखी गई है।

नीचे एक स्कूटी खड़ी हुई दिख रही है।

और कुछ झूले दिख रहे हैं और कुछ कुर्सीयां दिख रही--

जो की एक खिड़कियां टाइप हैं नीचे की तरफ एक नीला शटर दिख रहा है।

पीछे एक रेड कलर का सोफा पड़ा हुआ है।

वो पूरा वाइट मार्बल से लगा हुआ है।

सामने एक काउंटर लगी हुई हैं कुछ कुर्सियां रखी हुई दिख रही हैं।

एक तरफ कुछ बड़ी सी टी शर्ट टंगी हुई हैं जो कि सफेद रंग की हैं।

जिस पर गुरू कृपा डिजिटल लाइब्रेरी लिखा हुआ है।

एक लड़का काम करता हुआ दिख रहा है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा बगीचा दिख रहा है।

कुछ गुलाबी रंग की है जिन पर कुछ शीशे लगे हुए है जो हरे रंग के हैं।

पीछे एक सेफ रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने एक कार खड़ी हुई है जो कि वोल्वो की कार है।